इस इमेज में हमें एक नदी दिखाई दे रही है। नदी में कुछ घांस दिखाई दे रहा है और आस-पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में चेयर लगी हुई है जो सफेद और ऑरेंज रंग की है टेबल दिखाई दे रही है जो लकड़ी की है सामने की तरफ गेट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में दिखाई दे रही है मस्जिद का कलर सफेद है| उसकी छत पर हरा रंग भी दिखाई दे रहा है और आस-पास तो कुछ और इमारत दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो हमे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म पे एक छत लगी हुई है और उसके नीचे एक टेबल लगी हुई है और कुछ महीलाएं बैठी हुई है।

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है और फूल दिखाई दे रहे हैं।